और इन और तालाब के किनारे की पेड़ों की परछाई तालाब के अंदर दिख रही --

--ट्रे रखी हुई है जिसमे बहुत सारे मिठाईया रखी हुई है नमकीन रखी हुई है इसमें रबड़ी रखी हुई है कटोरियों में लड्डू रखे हुए है।

एक टेबल के ऊपर दो फूलदान रखे हुए है उसमें कुछ लॊग बैठे हुए है रेस्टोरेन्ट में एक फ्रिज रखा हैं ।

मुझे कक्षा दिखाई दे रही है कक्षा में बहुत सारी कुर्सियां राखी हुई है कुर्सीवो पे बहुत सरे लोग बैठे हुए है कक्षा में ऊपर की तरफ दो पंखे लगे हुए है।

रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है इसमें रेल की पटरियाँ दिख रही है रेल के पटरियों के बिच में काले कलर की गिट्टी दिखाई दे रही हैं।

और एक दो आदमी और दिख रहे है सब्जी के दुकान में टमाटर रखी हुए है ककड़ी रखी हुई है आम रख --

और एक खम्बा दिखाई दे रहा है कुछ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और आसमान दिख रहा हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू रखा हुआ है एक कोल्ड्रिंग वाला फ्रिज रखा हुआ है इस दुकान में एक लड़की खड़ी है जो मास्क लगायी है ।

एक बोर्ड पर पचपन लिखा है एक पर कलकत्ता सा सारीस लिखा है उस कॉम्प्लेक्स के सामने --

इस बिल्डिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है रायगढ़ लिखा हुआ है और बिल्डिं के सामने कुछ पेड़ लगे हुए है।

मैदान है उसमें कुछ घर दिख रहे है बिजली के तार दिख रहे है पेड़ दिख रहा है एक सफ़ेद कलर का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है |

--और तीन कार खड़ी हुई है यहाँ तीनो कार का कार सफ़ेद कलर की है और का कार के सामने कुछ जगह मे थोठी घास है।